यहाँ एक लड़की है | वो रेड कलर की कुर्ती और प्लाज़ो पहन के डान्स करने के पोज़ मे है और नीचे रंगोली लाल कलर के रंगे सो है।

ओर उसके बाजू मे भी एक आदमी ठहरा हुआ है ओर बिल्डिंग के सामने बहुत सारे केले भंडारे का दुकान लगे सो है।

ओर उधर एक छोटा सा लाल कलर का फूलों का झाड़ भी घर के पास मे दिखाई दे रहा है। ओर चारो तरफ हरियाली ही हरियाली --

ओर सामने से एक बडा गेट है और यहा पे दो बड़े-बड़े खंभे दिखाई दे रहे हैं ओर एक बडा सा झाड भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ एक पहाड़ दिखाई दे रहा है और उस के आजू बाजू मे भी बड़े बड़े झाड दिखाई दे रहा है ।

एक तरफ हरी चटनी है एक तरफ लाल कलर की चटनी है और हरे रंग की चटनी में एक चमच है और बाजू एक फोरक भी दिखाई दे रहा है।